जैसे कि आप देख रहे हैं ये राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल है और बहोत ही बड़ा बना हुआ है। हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं। झंडा भी लगा हुआ है।

जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही बड़ा मंदिर हैं और यहाँ पर हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं बहुत ही सुंदर मंदिर हैं और--

जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर रोड है और हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं साइड एक घर बना हुआ है।

जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही सारी दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं बहुत ही सारी--

जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये छोटे-छोटे किसी जानवरों की मतलब दुकान लगी हुई हैं यहाँ पर एक अंकल भी बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े भी हुए हैं।

आप देख सकते है यहां पर एक घर बन रहा है। बहोत सारी ईंटे पड़ी हुई है। खंभे भी लगे हुए है। कुछ वर्कर लोग काम भी कर रहे हैं।

जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर कुछ लड़के गेम खेल रहे हैं और यह चद्दरों का बना हुआ है।

जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा खेत हैं और यहाँ पर गेहूं लग रहे हैं इस तरफ गेंदे के फूल भी लगे हुए हैं।

जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक होटल या फिर एक कैफे हैं।

जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर एक रोड बना हुआ एक बोर्ड टूटा पड़ा हुआ है बहोत सारे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं ग्राउंड है वहां से--

जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक नर्मदा सदन हैं ये बहुत ही बड़ी बनी हुई हैं यहाँ पर हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं और यहाँ पर सामने ही एक जीभ भी खड़ी हुई हैं।

जैसे कि आप अ देख रहे हैं ये एक बहुत ही बड़ा बड़ी यूनिवर्सिटी हैं गोलाई में यहाँ पर जीप खड़ी हुई हैं तो लोग खड़े हुए हैं गाड़ी भी खड़ी हुई हैं।

जैसे कि आप देख रहे हैं ये खेत हैं यहाँ पर और यहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई हैं यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई हैं।

जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक क्लास हैं यहाँ पर दो बोर्ड लगे हुए हैं पीछे एक खिड़की लगी हुई हैं बहुत सारी टेबलें भी लगी हुई हैं यहाँ पर--

जैसा कि आप देख सकते है यहां पर एक ब्रीज बन रहा है बहोत ही बड़ा और--

जैसे कि आप देख रहे हैं ये पेट्रोल पंप हैं और यहाँ से एक ट्रक जा आ रहा हैं और यहाँ पर जीपे भी खड़ी हुई हैं वहाँ से एक बस भी आ रही हैं।

जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सा ये एक हॉस्पिटल हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग बाग माक्स लगाकर बैठे हुए हैं पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं डॉक्टर भी हैं यहाँ पर--

जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही बड़ा पेट्रोल पंप हैं यहाँ पर जीप पे स्कूटी वगैरह खड़ी हुई हैं आ रही हैं जा रही हैं।

जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर बहोत सारी बाइक खड़ी हुई हैं अह अच्छी अच्छी न्यू न्यू ।